ये फोटु कित्ता अच्छा लग रहा। कितने अच्छे बादल ओ बहुत अच्छे दिख रहे औ देखो बहुत चीज हई। देख पारक कैसा अच्छा अच्छा है। बहुत अच्छा --

ए.टी.एम. का फुलफॉर्म मोटरसाइकिलौ खड़ी साइट में और बहुत अच्छा लगी रहा है। नलियौ बनी साइटन देखौ। दुकानें लगी।

जो देखो यहाँ पे फुलवारी रखी टांकरौ खड़ा हैं बैगनार गाडी खड़ी बहोत अच्छा लग रहा है इहाँ पर--

हो देख केत्ते सब मालेन में लाइटे जरइ केत्ता अच्छा घरओ लग रहत ह गेट देख केत्ता बड़ा लगा ह मित्ता बड़ा गेट काले कलर क लगाई रक्खेंन निमे हेलिकाप्टर घुसे --

वोई देखो झुलवे के अंदर खड़े वोई देखो रपतन वाले झुलवेल लगे है लाल कलर से सब पुत्ती है सबकी छती देखि कितनी अच्छी लग रही बोहोत अच्छी हई ।

वोई देखो झंडे मंदिर के ऊपर कित्ते लगे हैं बोहोत ऊँचा गर्व हैं ये जो थाई बात हम तुम्हैं बता वाई देखो कितना ऊँचा मंदिर बना हुआ हियँ |

देखौ यहाँ पढाई बोहोत अच्छा झुलवाओ लगा है। झुलवा बहुत अच्छा होत हैं। बच्चे यहाँ खूब पढ़न आवत हैं। देखौ सफ़ेद कलर से पुता है सब कुछ। देखो हरे पत्ते हैं।